यहां पे कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के बगल में बहोत सारे टाइल्स रखे हुए हैं।

कुछ पेड़ भी है ग्रीन कलर के आसमान पूरा साफ है नीले रंग का दिखाई दे रहा--

सामने में कुर्सी भी रखा हुआ है एक पानी का बोतल भी है साथ में रखा उसके बगल में कुछ कप रखे हुए हैं व्हाईट कलर के।

ब्लू कलर का पैन्ट है पैरों में व्हाइट और ब्लैक कलर का जूता है आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा लगा हुआ हैं।

पत्थर के बीच से रास्ता दिखाई दे रहा है उसके पास के पास में भी कुछ छोटे पत्थर कुछ लकड़िया गिरी हुई है।

यहां पे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है गेट जो काले रंग का है लोहे का गेट है।

सामने में दीवाल भी है बड़ा सा दीवाल का भी गेट बना हुआ है जो व्हाइट रंग का है ऊपर वो पंजाबी में लिखा हुआ है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर मुंह पे बहुत सारी चीज टंगे हुए हैं।

तो एक प्लास्टिक में रेड कलर का कुछ सामान टंगा हुआ है नीचे में तीन बोरा रखे हुए हैं।

सामने में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के बीच में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं ब्राउन कलर के उन गमलों में--

यहां पे दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर में छत जो है।

बगल में स्कूटी भी लगा हुआ है उसके बगल में ग्रीन कलर का बोर्ड भी है।

यहां सामने में बहोत सारा पानी जमा हुआ है देखके बड़ा सा तालाब लग रहा है उसमें एक नाव है नाव रस्सी से बंधा हुआ है।

यहां पे का रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के बगल में एक लोहा का रेलिंग दिया हुआ है।

ऊपर में एक बोर्ड है जो ब्लैक कलर का है उसके ऊपर में एक चार्ज का फोटो बना हुआ है।

एक ड्रिंक है नीचे में व्हाइट कलर का लाइन है उसके ऊपर वो गुप्ता लिखा हुआ--

यहां पे बहुत सारा बाइक और स्कूटी दिखाई दे रहा है एक स्कूटी का कलर सादे रंग का है एक जो बाइक है उसका कलर ब्लैक सिल्वर में है।

दूर में एक और क्रेन है येलो कलर का वो लोहा गरट में लोहा का वायर से बंधा हुआ है उस--

पीछे में जो बड़ासा बिल्डिंग हैं उसमें कांच के बहुत सारे गेट लगे हुए हैं ऊपर ब्लू रंग का पेंट किया हुआ हैं।

सामने में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी के बगल में कुछ मिट्टी भी रखा हुआ है।